ये किसी जंगल की फोटो दिखाई दे रही है जहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और एक काले कलर की शेर की मूर्ति भी बनी हुई दिखाई दे रही हैं यहां बहुत लोग --